यहाँ पर एक मैदान में बहुत सारे रंग बीरंगे ऑटो खड़े हुए दिखाई दे --

यहाँ एक मैदान में बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिसमे वो कुछ सर्वे कर रहे है आस --

छोटा-सा तालाब जैसा बना हुआ है जिसमे --

यहाँ पर एक कास्मेटिक की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर रैक में सामान भरा रखा --

यहाँ पर रोड पर ऑटो और बस खड़ी हुई है आस पास उ व्यक्ति आते जाते दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर कोई झांकी निकाली जा रही है जिसमे बहुत सारी सजावट की --